जो की उस गाड़ी की तरफ देख रहा है|

ये बड़ा सा ग्राउंड है कुछ पेड़ दिख रहे है मुझे।

और जो फ़ील्ड है वो थोड़ा --

इस फोटो पे एक स्कूल का फंक्शन --

होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें बच्चे अपने पर्फोर्मेंस दिखा रहे है।

ये बैंक तिन तिन मंजिले का है।

जो कि घांस-फूस का बना हुआ है।